जिस ढाबे के बाहर अक्षरों में लिखा हुआ है ए_बी पोल्स एंड मैरिज गार्डन ।

जहां बहुत सारे प्लाई रखी हुई--

संख्या मे भीड़ नजर आ रही है जहाँ अजीब संख्या में पुरुष और कम संख्या में --

दिख रहा चित्र किसी सड़क के किनारे बने हुए छोटे से --

एक घड़ी नजर आ रही है और एक खिड़की भी नजर आ रही है।

जिसके बाहर एक लाइटिंग बोर्ड दिख रहा है।

इस सड़क के दोनों तरफ दो अलग अलग गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ--

और कुछ कैट्स भी दिखाया जिसके बोर्ड पे ओम जी लिखा --

दो पुरानी टूटी फूटी नाव नजर आ रही है।

यहां चार लोग बड़े बड़े कट्टे उठा रहे हैं।

लगे हुएं है बोर्ड के ऊपर लिखा है कृष्णा फैंसी स्टोअर ।

जिसमें कई गुब्बारे लटके दिखाई दे रहे हैं।

कॉफी कुर्सियां भी लगाई हुई है और कुछ लाइटे भी।